ठेला लगा है आइसक्रीम बेच रहा है घर बन रहा है देख दम --

बजरंगबली पत पत्थर उठाया है।

देखिए नदी में कैसा पानी च बही रहा है बीच मे घर है पेड़ है आदमी सब नहा रहे हैं।

मछली पकड़ने का जाल है कैसे रहने का बनाया है व्यवस्था कैसे किया देखिए आप लोग।

ये जो दिख रहा है कोई वाइट कपड़ा पहना है कोई लाल कोई काला।

देखिए आदमी थो खड़ा है का फोटो है।